ग-घास दिख रही है ग्राउन्ड में सामने एक सीमेंट का पिलर दिख रहा है रेलिंग के नीचे बाउंड्री दिख रही है ऊपर आसमान दिख रहा है।

सामने एक विद्यालय नजर आ रहा है आजू-बाजू खिड़कियां नजर आ रही है सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है सा--

गेट मे व्हाइट कलर है अंदर येलो कलर की दीवाल है। ऊपर पेड़-पौधे दिख रहे है छानी दिख रही है आसमान दिख रहा है सामने ब्लू कलर का बोर्ड है विंडो दिख रही है।

सामने एक बहुत बड़ा ग्राउन्ड दिख रहा है ग्राउन्ड में घास लगी हुई है ग्राउन्ड में पेड़ पौधे की परछाई दिख रही है सामने विद्यालय दिख रहा है।

सामने एक विशाल तालाब दिख रहा है तालाब में पेड़-पौधों की आकृतियां नजर या रही है आसमान नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में एक भवन दिखाई दे रहा है भवन के सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है।

सामने एक विद्यालय दिखाई दे रहा है विद्यालय दो कलर में दिखाई दे रहा है विद्यालय मे दो फ्लोर है दरवाजे दिखाई दे रहे हैं खिड़की दिखाई दे रही है।

सामने एक स्कूल दिख रहा है जो कि तीन तीन फ्लोर का है खिड़की दरवाजे नजर आ रहे --

सामने मंदिर दिख रहा है मंदिर के ऊपरी भाग पिंक कलर का है टैंट लगा हुआ है टैंट के ऊपर सीट लगी है।

सामने एक ग्राउंड है जिसमे कुछ खड्डे है कीचड़ है पानी है पत्थर है पत्थरो के ऊपर काले-काले रंग की मिट्टी दिख रही है।

सामने बहुत सारी लाइटिंग दिख रही है जो की पर्पल कलर में है येलो कलर में है गोल्डन कलर में है व्हाइट कलर में है एक ब्रिज दिख रहा है ब्रिज के ऊपर एक ब्लू कलर का कंटेनर है।

सामने पानी दिख रहा है समुद्र टाईप से दिख रहा है ऊपर कुछ पत्थर दिख रहें हैं।

सूरज दिखाई दे रहा है सूरज की किरणे दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है आसमान में तीन चार कलर दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।